और काफी सारे जने भी दिखाई दे रहे हैं और पीछे क्रिस्चन जैसे--

सीमेंट के कट्टे दिखाई दे रहें हैं।

और सामने एक वाइट कलर की वैन भी दिखाई--

पानी के मटके ही दिखाई दे रहे--

एक शेर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर पाइप वगैरह के सारे समान भी दिख रहे--

यहां पर एक खाली गार्डन दिखाई--

यहां पर एक झरना दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर का बाहर दरवाजा भी दिखाई--

रूम में तीन लड़कियां योगा कर रही--

और बाहर मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रही--

और पेड़ पौधों के पास एक आदमी खड़ा हुआ है हाथ में गमला--

होटल का नाम है होटल सादकी शुध शाकाहारी--